पेड़ पौधे सभी हरे भरे दिखाई दे रहे--

आगे बहुत बड़े घर दिख रहा है घड़ घर के नीचे एक लड़का जाता हुआ दिख रहा है उसने सफेद कपड़े--

ये दिखाई दे रहा है वो बैंक के बगल--

नीचे भी एक बंदा चलता हुआ दिखाई दे रहा है।

और बिल्डिंग में काफी सारी खिड़कियां भी दिखाई दे रही हैं ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है आसमान में काफी सारे बादल भी दिखाई दे रहे--

बहोत बड़ा टावर दिखाई दे रहा है और एक सोलर पैनल भी दिखाई दे रहा है बिजली का खंबा भी दिखाई दे रहा है।

गार्डन में बहोत सारे फुल दिख रहे है फूल काफी अलग अलग कलर के दिखाई दे रहे कुछ पीले रंग के को कुछ गुलाबी रंग के फूल दि--

यहां पे कुछ हॉस्पिटल जैसा दिख रहा है जिसमें तीन खटियाए दिख रही हैं खतियो खटियो पर गद्दे लगे दिख रहे हैं गद्दे जामुनी रंग के दिख रहे--

चाव ऊपर आसमान भी दिख रहा है आसमान में बादल भी दिख रहा है आसमान ब्लू रंग का दिख रहा है पीछे पेड़ पौधे भी--

नीचे काफी लोग इधर उधर चल रहे ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है आसमान एकदम--

इसमें काफी सारे वाजेंद्र दिखाई दे रहे हैं एक ढोल भी दिखाई दे रहा है और एक गिटार भी दिखाई दे रहा है एक--

पेड़ भी दिख रहा है पेड़ के पत्ते हरे हरे दिख रहे हैं नीचे कच्ची मिट्टी भी दिख रही है और मैदान भी दिख रहा है।

इसमें काफी सारी घास दिखाई दे रही है घास हरी हरी दिख रही है काफी पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं पेड़ पौधे भी--